--सा मंदिर दिखाई दे रहा है जिसमें व्हाइट कलर के बलून्स भी लगे हुए हैं और पिंक कलर की दीवाल भी दिखाई दे रही है मं --

बहुत सारी लड़किया दिखाई दे रही है जो डांस कर रही है कुछ लड़कियों ने पीले कलर की ड्रेस पेहनी हुई है और कुछ लड़कियों ने पिंक और ब्लू कलर की ड्रेस पेहनी हुई है।

ब्लू कलर की एक जे_सी_बी दिखाई दे रही है और बहुत सारे बड़े-बड़े पैड-पोधे भी दिखाई दे रहे है।

कलर की एक दीवाल दिखाई दे रही है जिस पर व्हाइट कलर के कुछ बल्बस लगे हुए है और कुछ व्यक्ति बैठे हुए भी दिखाए दे रहे हैं।

एक रेड ग्रेन येलो और रेड कलर का रिक्शा दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। जिसने व्हाइट कलर की टी शर्ट पहने हुई है। एक बड़ी सी बिल्डिंगस भी दिखाई दे रही है। जिसका कलर व्हाइट है ।

गेट दिखाई दे रहा है जिस का कलर पीला है एक पर्दा भी दिखाई दे रहा है जिस का कलर पिंक है एक व्हाइट कलर की दीवाल दिखाई दे रही है।